इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए है तथा यहाँ बाहर एक बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

सामने हमे एक बहुत बड़ी किला दिखाई दे रही है इस किला के बाहर एक मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही है जो की घोड़े पर सवार बनी एक मूर्ति है।

सामने हमें एक बड़ा दिखाई दे रहा है इस मैदान के किनारे एक रोड बनी हुई दिखाई दे रही है तथा इस रोड पर कई सारे व्यक्ति चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक ये अंसन की मूर्तियों को कुल्हाड़ी रखे हुए बनाय गया है तथा दूसरी औरत को सिर मे कुछ समान रखे हुए मूर्ति बनाया गया है।

तथा इसमें बैनर मे लिखा हुआ है माया ऑटोमोबाइल्स बजाज तथा इसके बाहर भी बहोत सारी बाइकस खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

बल्ब लगे हुए दिखाई दे रहे है जोकि एक लाइन से एक के बाद एक लगे हुए है तथा इसमें कई सारे टीशर्ट व कपडे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

आदिमानव की तस्वीर भी बनी हुई दिखाई दे रही है जहाँ दो आदिमानव सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिस पे एक तरफ वेज और दूसरी तरफ नॉन वेज लिखा हुआ है तथा दो टोमेटो सॉस भी रखे हुए दिखाई दे रहें हैं।